पैरेट दिखाई दे रहे हैं कुछ पक्षी नजर आ रहे हैं जो की बैठे हुए हैं।

बास्केट में मछलियां दिख रही है।

और काफी सारी लाइटें दिख रही है।

कॉर्न दिखाई दे रही हैं जिसपे लिखा हुआ हैं अजंता डेयरी --

इस इमेज में देखिएगा एक रास्ता नजर आ रहा है ये एक गांव का सीन है आजू बाजू जंगल है।

काफी सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

कई सारी ऑटो रिक्शा दिख रही है।

आजू बाजू देखिएगा पेड़ दिख रहे हैं।

यहां ढेर सारे पेड़ दिख रहे हैं उस तरफ देखिएगा --